ये कोई बड़ा-सा पार्क लग रहा है इस पार्क के अन्दर देखो --

खड़ी हुई हैं और ये कौन-कौन सी कम्पनी की सायकल है।

ई ये भी बहुत बड़ा सा मैदान दिख रहा है जिसके अंदर --

और ये किसी चीज़ का जश्न मना रहे हैं | इनका कोई त्यौहार है ।